वाइट कलर की ब्लैक कलर की उसके पीछे कोई एक हवेली है वो वहाँ पर ट्यूबलाइट लगी हुई है |

बहुत बड़ा कोलिसा है और यहाँ पर कुछ ट्रक खड़ा हुआ है एक ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी हुई है और कुछ हरे भरे पौधे हैं कुछ लकड़ियां पड़ी है और कुछ बराबर में खड़ा हुआ है।

ये एक बैट की दुकान हैँ और इनमें बैट कुछ बॉल रखे हुऐ हैँं और ग्रीन कलर के लेड रेड कलर के वाइट कलर और ब्लू कलर के रखे हुऐ हैं।